बहोत खूबसूरत सा एक घर है जो की है व्हाइट और पिंक कलर का और इसके बाहर एक गार्डन भी है।

ये एक शोरूम है बहुत बड़ा सारा लेकिन शोरूम के बाहर ये दो कार्स खड़ी हुई हैं।

ये एक शोरूम है बहुत बड़ा सारा जिसका नाम है हीरो शोरूम ।

ये कॉलेज की क्लास है जो की सर ने ना एक बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहे हैं उनके स्टूडेंट्स को।

ये एक हॉस्पिटल का रूम दिख रहा है जिसमें चार बेड्स हैं और चार मरीज लेटे हुए हैं बेड पर एक साथ।

और बहुत प्यारी सी बैकरी है बैसिक्ली जो की बोहोत अच्छी लग रही है यमी-यमी चीज --

और हैं ना एक अंकल बाहर हैं और वो रुमाल अपने हाथ से कान पर लगाए हैं।

ये ऑटोस हैं दो तीन जो की बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। इनका नाम है बीऍमडब्लू ।

बहोत खूबसूरत एक गार्डन दिख रहा है ग्रीन कलर का। पूरा उसके अंदर उ पेड़ ओड़ हैं। ट्रीज है। घांस है जो ये सब ग्रीन कलर का --

और यहाँ एक घर दिख रहा है जो की यह व्हाइट कलर का और वो भी बहुत अच्छा लग रहा है और लुक्सुरिऑस वाईब आ रही है।

और ये ब्लैक एंड वाइट फोटो है इसके अंदर बहुत सारे डॉगीज है बंदर्स बैठे हुए रोड पर कोई एक इंसान नहीं दिख रहा तो ये एनिमल्स दिख रहे है जो कि बहुत क्यूट लग रहे है और बहुत सुकून सा है।